इस चित्र मे बहुत बड़े-बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है जो कि ब्लैक कलर के है और बहुत बहुत सारी झाड़ियां है।